यहाँ पर कई तरह के स्वादिस्ट पकवान भी मिलते हैं ।

बहार के बैंक के बाहर का सीन है इसके ऊपर सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया लिखा हुआ है यह काफी पुराना लग रहा है। इस --

ये मैरेज हॉल का सीन है इसमें एक व्यक्ति चेयर पे बैठा हुआ है और इसमें काफी मेज़े पड़ी हुई हैं इसमें दो दरवाज़े दिखाई दे रहे हैं और एक खिड़की भी दिखाई दे रही है| इसमें --

उस मस्जिद के अंदर का लिया है। इस सीन मे सफेद मार्बल लगे हुए है और एक मुसलमान कुर्सी पर बेठा हुआ ओ कर रहा है और उस --

इसमें एक टी-शर्ट दिखती हुई नजर आ रही है जो कि सफेद कलर की पन्नी पर रखी हुई है। उस पन्नी पर राज लिखा हुआ है और मोबाईल नंबर --

भी ढला हुआ है और सेट का कलर भूरे और काले रंग का है। जिसमें कि लाइन की बटन लगे हुए हैं। साइड से बटन लगे हुए हैं। चार बटन साइड से है और --

यह प्रातिक दृश्य जैसा दिख रहा है इसमें आसमान पीला --